यह तस्वीर एक दुकान की है इस दुकान का रंग व्हाइट और ब्राउन है।

बगल में एक सफेद रंग का कुलर भी रखा हुआ है। नीचे हरा रंग का कारपेट भी बिछा हुआ है।

यह तस्वीर एक कपड़े के दुकान की है यहां का रंग सफेद है।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

यहाँ पे बहोत सारी लाइटें भी जल रही है यहाँ पे बहोत सारे कपड़े भी टंगे हुए हैं।

यह तस्वीर एक खेत की है जिस खेत में बहुत सारे अलग अलग तरह के पत्ता गोबी उगे हुए है।

यहां पे बहोत सारे पत्ता गोभी हैं अगल बगल बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

मंदिर का रंग ऑरेंज और येलो है।

यह तस्वीर बहोत सारे पठाकों की है।

यहां पे काली रंग की कुर्सियां भी हैं यहां पर एक पुतला भी खड़ा है।

यहां पर कुछ लोग भी है यहां एक काले रंग का सोफा भी है जिसपे एक बैग भी रखा हुआ है।

बहुत सारी घास भी उगी हुई है यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहां बगल में भी बहुत सारा सीढ़ी है यहां ऊपर में बहोत सारा छड़ भी निकला हुआ है।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

यहाँ पे बहुत सारे खिड़कियाँ और दरवाजे भी है।

यह तस्वीर एक चर्च की है चर्च का रंग व्हाइट और ब्राउन है।

यहां पर लाइटे भी जल रही है यहां एक तंबू भी गाड़ा गया है।

इसका रंग पिंक है ऊपर बहुत सारा लटकने वाला भी लगाया गया है।

इनका रंग ब्लू है यहां का दीवार का रंग ब्लू है।

यहां पर अगल बगल पेड़ पौधे भी हैं यहां का गेट का रंग ब्लू हैं।